यह दृश्य जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान चूरू का है।

इसके सामने बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है बिल्डिंग को पीले और लाल रंग से पेंट किया गया है।

बैंक के आगे स्टील की गिली गिल लगी हुई है।

इस दृश्य में व्यक्ति भगवान का सरूप पहनकर खड़े हुए है।

यह दृश्य एक तीन मंजिला मकान का है जिसके आगे लोहे की ग्रील से एक दरवाजा बनाया गया है।

यह संतरी रंग मे पैंट की गई है इसके आगे ग्रिल--

ऐ दृश्य एक बाजार का नजर आ रहा है बाजार में यह एक पुराने समय की इमारत बनी हुई है।

यह दृश्य बाजार मे किसी मंदिर का नजर आ रहा हे जिसके ऊपर पीले रंग का निशान बना हुआ है।

यह दर्शय एक घर की छत का है छत के ऊपर लोहे की ग्रिल लगाई गई है।